इसमें नीला काला अ सफेद आसमान दिखाई दे रहा है इधर।

हरा भरा मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें पेड़-पौधे लगे हुए हैं इसमें बगल में मकान दिखाई दे रहे हैं ऊपर नीला सफेद सफेद सा आसमान दिखाई दे रहा है।